इस इमेज में यहां पर एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है जहां पर एक आदमी पैसे निकलता नजर आर हा है।

इस इमेज में यहां पर एक नर्सरी दिखाई दे रही है जहां पर कुछ हरे भरे पौधे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक रूम दिखाई दे रहा है जहां पर बेड लगा है सामने खिड़की भी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक जिम दिखाई दे रही है जहां पर एक्सरसाइज करने की मशीनें रखी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है नीचे कार खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है बाहर एक लड़का फोन पे बात करता नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक होटल दिखाई दे रहा है और यहां पर स्विमिंग पूल का बोर्ड भी लगा दिखाई दे रहा है।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

इस इमेज में यहां पर एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर देखिएगा कुर्सी टेबल रखे नज़र आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक कार दिखाई दे रही है जहां पर एक पानी का पाइप भी रखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने एक इमारत दिखाई दे रही है यहां पर उदय हॉस्टल लिखा नजर आ रहा है।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

इस इमेज में यहां पर एक कनक वृंदावन दिखाई दे रहा है और सामने बड़ा सा पेड़ भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक पार्किंग दिखाई दे रही है जहां पर लाइन से कुछ कारे खड़ी नजर आ रही हैं।

इस इमेज मे यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है बीच मे बुद्ध भगवान की मूर्ति नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं सामने बड़ा सा पोस्टर भी नजर आ रहा है।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

इस इमेज मे यहां पर एक मकान बनता दिखाई दे रहा है सामने एक बिल्डर भी खड़ा नज़र आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर पत्थर की चट्टानों के बीच में गुफा दिखाई दे रही है जहां पर एक आदमी लेटा नजर आ रहा है।

इस इमेज मे यहां पर एक मार्ट दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत सारा समान रखा नज़र आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक क्लीनिक दिखाई दे रहा है जहां पर दिखेगा दो डॉक्टर खड़े नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक काउंटर दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लेडिस और जेंट्स खडे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक गैरेज दिखाई दे रहा है जहां पर मोटरसाइकिल खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहाँ पर कुछ शो प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जयपुर मॉडर्न किचन लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है और पत्थर के ऊपर एक आदमी बैठा नजर आ रहा है।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

इस इमेज में यहां पर बिल्डिंग दिखाई दे रही है और नीचे कुछ गाड़ियां खड़ी नजर आ रही हैं।

इस इमेज में यहां पर एक सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर कुछ सब्जियां रखी नजर आ रही है।